और पीछे में दो ठो लड़का लड़की भी दिखाई दे रहा है।

दोनों का फ्लस फेस ब्लर किया गया है।

इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

फोन कवर भी दिखाई दे रहा है।

ये एक रिजॉर्ट का नजारा दिखाई दे रहा है।

जीसमें चार सिस्टर भी दिखाई दे रहा हैं व्हाइट कपड़ा पहन के।

और उसके पीछे एक स्टेच्यू भी दिखाई दे रहा है।

और आस पास में बहोत सारा घास और पेड़ जंगल दिखाई दे रहा है।

और उसका सामने में एक ठो इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है।

लड़की लड़का सामान खरीदते हुए दिखाई दे रहा है।